और बहुत सुंदर ये स्टेज सजा है नीचे हरी-हरी घास आई है स्टेज का कलर वाइट और गोल्डन कलर का है आजू-बाजू बड़े-बड़े पेड़ दिख रहें हैं कुछ लोग नीचे खड़े हुए दिख --

एक मेडल टाइप कुछ रखा अवार्ड जैसा कुछ रखा है उसके उपर वाइट ए.सी. रखी हुई है वहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स रखें हैं एक में शर्ट्स रखी हैं अलग-अलग टाइप की।

वेसे एक लैपटॉप रखा हुआ दिख रहा है।

झंडा लगाया हुआ दिख रहा है नीचे टाइल ।